सफेद कलर का शर्ट और एक ब्राउन कलर का स्वेटर पहना हुआ हैं तथा उसके पीछे मे बहुत से शेप दिख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सी दवाईया लगी हुई हैं वहाँ पे हमे पंख दिख रहा हैं जो की काले कलर का हैं वहाँ पे बहुत सारी लाइटस भी जल रही--

चट्टान के ऊपर से शहर का दृश्य बोहोत अच्छा लग रहा है तथा वहाँ पे हमें बहुत से छोटे-छोटे मकान ओर बड़े- बड़े मकान आसानी से दिखाई दे रहे है वह चट्टान बहुत ऊँची और भूरी हैं।

ये इमेज में हमें झंडा वंदन करते हुए दिखाया जा रहा है इसके आसपास हमें लोग दिख रहे है और--

वहाँ पर हमें बाहर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं जिन के पास बहुत सा समान है तथा एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की एक शर्ट और स्वेटर पहना हुआ नजर आ रहा--

यह इमेज में हमें एक बड़ा सा जनरल किराना स्टोर दिख रहा है जिसके ऊपर बैनर पे जनरल किराना स्टोर का नाम--

वहां पे बहुत सी औरतें खड़ी है। तथा वह साड़ी पहनी हुई दिख रही है। वह शायद वहां पर पूजा पाठ करने आई है। तथा वहां पर हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जोकि खेल रहे है।